यह हमको एक इन्डक्शन दिखाई दे रहा है जिसमे हमको एक पेटी दिखाई दे रही है और उस मे हमको एक ढोलक दिखाई दे रही है इसमे बोटल रखी हुई है।

इसमे एक झूला दिखाई दे रहा है रेड कलर का जिसमे एक लड़की बैठी हुई है और इसमे एक लगी हुई हैं।

यहांँ कुछ दस बारह स्कूटी दिखाई दे रही है जिसमें ब-कुछ लोग बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें इसने एक ब्लैक दिखाई दे रहा है इसमें बहोत सारे पेड़े लगे हुए हैं यहाँ पर हमको एक पोस्टर लगा हुआ है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है और --

इस इमेज में एक कार दिखाई दे रही है जिसमें एक दादाजी पानी कि बाल्टी लेकल कार को धो रहे हैं इस --

इधर हमको पत्थर दिखाई दे रहे हैं देखने मे बहौत अच्छा दिखाई दे रहा है चारों तरफ बहौत हरियाली दिखाई दे रही है नीचे खाई जैसी दिखाई दे रही है यह देखने मे बहौत ही जादा भयंकर दिखाई दे रही है जिसमे बहौत ग --